ये एक दावत पैलेस है दिखाई दे रहा है और सामने इसके काफी सारे गमले रखे हुए है और अः जो बिल्डिंग है वो ब्लैक कलर की है काफी अच्छी दिख रही है इसके आस पास पेड़ भी है।

ये एक होटल का व्यू है जो की दिखने में बहोत अच्छा लग रहा है वाइट कलर्स की चेयर्स पड़ी है नीचे ग्रीन ग्रास है और आस पास काफी पेड़ दिखाई दे रहे है शाम का समय--

इस फोटो में एक आदमी जो हाथी की जो सूंड होती है उस पर बैठा हुआ है फोटो खींच वाने के लिए उसके वाइट कलर की शर्ट पहनी है ब्लू कलर की जीन्स है और उसके पीछे काफी सारे पेड़ है।

पार्किंग व्यू लग रहा है जहां पे बहुत सारे ऑटो खड़े हैं और आसपास काफी घर बने हुए हैं श्याम का टाइम है और काफी धुआं धुआं सा लग रहा है।

एक बोर्ड लगाया हुआ है द चाट मास्टर के नाम से उसके पीछे जो बोर्ड है वो क्रिम कलर का है और एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है पीछे और एक वाज रखा हुआ है।

यहां पर एक लेडी खड़ी है ग्रीन सूट पहन के उसके साथ एक बच्चा है और--

ये एक ऑफिस है जहा पर एक चेयर पड़ी है उसके साथ एक दरवाज्या है ब्राउन कलर का और वॉलपेपर लगा हुआ है उसके पीछे सर्टिफिकेटस टंगे हुए है चेयर्स के पीछे --

एक स्टडी सेंटर का व्यू है जहाँ पे हेस्टन इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नाम है यहाँ पे काफी तरह के कोर्सेस करवाये जाते है जो साइड में मेंशन किए गए है।

ये मार्केट व्यू है जहा पे पिज़्ज़ा वे जो एक रेस्टोरेंट बना है साथ में न्यू चावला ऑप्टिकल की शॉप है और इनके साथ और भी बहोत सारी दुकाने है जिस के बगल बैलून्स भी पड़े है व्हीकल्स खड़े है।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

पुरानी दुकान है जहा पर जो फर्श है वो मिटी का है और आस पास दो वेन्स खड़ी है पिले रंग की और भी कबाड़ का सामान पड़ा है कोई रीपेरिंग शॉप लग रही है पर उसके अस्स पास काफी सारे पेड़ है।

ये वाइट कलर की एक मूर्ति पड़ी है जिसके का साथ काफी सामान रखा हुआ है पूजा का --

जिन्होने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है और उन्होने धोती कुर्ता पहना हुआ है।

होटैल भी हुए है जहां पे ये बहोत बड़ी चेयर पड़ी है।

सोफा जिसको बोला जाता हैं और साथ में ब्राउन कलर का सोफा हैं और एक टेबल पड़ा हुआ हैं ब्लैक रंग का उसके--

ऊपर एक बास रखा हुआ हे उसमे येलो कलर के फुल हैं।

काफी सारे लोग खड़े हुए है यहां पे जो की क्रिश्चियन लग रहे हैं और एक साइड में औरत है जिसने ब्लैक कलर की कोठी पहनी है। उसने मुंह ढका हुआ है अपना और भी काफी सारे लोग खड़े हैं।

ये खेत है जहां पे काफी सारी अ सब्जी बीजी हुई है आसपास काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और व्युव बहुत अच्छा लग रहा है।